इस रूम में तीन आदमी बैठकर योगा कर रहे हैं।

ऊपर दिए गए तस्वीर में एक रूम दिख रहा है।

इस तस्वीर में दो आदमी और दो बच्चे दिख रहे हैं।

तस्वीर में एक ग्रीन कलर का बॉक्स है और एक ब्राउन कलर का बॉक्स है।

इस कार का रंग सिल्वर कलर का है।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

खेतों में बहोत सारे हरे रंग के पौधे लगाए हुए हैं।

इस तस्वीर में एक बुक का दुकान दिख रहा है जिसका नाम है बुक बाजार ।

इस दुकान के ऊपर और एक दुकान है।

तस्वीर में एक कपड़े बनाने वाला मशीन दिख रहा है।

ऊपर दिए गए तस्वीर में एक वेलकम गेट दिख रहा है।

तस्वीर मे येलो रंग का गेट भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं।

लाल रंग की कार के आगे एक रिक्शा खड़ा है।

सरक पे दो गायें चलती हुई दिख रही है।

आदमी ने लाल रंग का एक शर्ट पहना हुआ है।

दिए गए तस्वीर में सनसेट का व्यू दिख रहा है।

तस्वीर में दो टावर और एक नदी दिख रहे है।

उस बिल्डिंग के आगे एक सफेद रंग का कार भी खरा है।

पार्क के पीछे रोड में एक बस खड़ा है।